अपने ढाबा का नाम रखे हुए हैं और इसके आस-पास औरतें हैं जो टेस्ट करने के लिए खड़ी हैं।

कलर किया ये है और सफेद कलर से भी है।

ऑटो बोलेरो सभी तरीके के वाहन जाते है। यहाँ पे कुछ लोग म्म बहोत सारे लोग पैदल भी रोड क्रॉस करते है।